और उसके बगल में कुछ तरबूजें दिखाई दे रही है और कुछ नीचे में भी तरबूज रखे हुए हैं।

यहाँ पर मुझे बहुत सारे पटरे दिख रहे हैंजो मिट्टी कलर के हैं।

और कुछ साइड में बड़ी-बड़ी घर दिखाई दे रही है जो अलग-अलग कलर के हैं।

और एक साइड में और बाइक दिखाई दे रहा हैजिसको किसी के ऊपर चढ़ाया गया है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा पार्क जैसा कुछ दिख रहा है।